पर एक टिफ़िन बॉक्स भी रखा हुआ है। यहाँ पर लाइटिंग भी लगी हुई है व्हाइट कलर की यहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगे हुए है। यहाँ --

ये भी एक समुंदर है यहाँ पे एक बोट दो बोट है एक छोटी दिखाई बोट है एक बड़ी बोट है यहाँ पर पानी ही-पानी ही पानी दिखाई दे रहा है दूर-दूर तक सामने व्हाइट कलर के बादल भी है।

जो चल रही वॉक कर रही है उसकी ब्लैक कलर के बाल भी दिख रहे है और यहाँ पे एक रस्ता भी दिख रहा--